तस्वीर में मुझे कुछ गमले दिखाई दे रहे हैं।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

यहां मुझे तीन पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे बाल दाढ़ी स्पा एंड सैलून दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहें--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

इस चित्र में मुझे एक चर्च दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे दो तोते दिखाई दे रहे हैं।